और पंखे भी दिख रहे हैं और कुछ लाइट जल रही है।

और चार औरत दिखाई दे रही है।

यह एक चिनई का काम है जिसमें एक आदमी दिख रहा है।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

यह एक शर्मा बैंड की दुकान है।

और पेट्रोल का टैंक भी दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

वह छत पर रेलिंग भी लग रही है।

और तीन औरत हैं और एक आदमी है।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

और हैरे कलर के मैट भी दिखाई दे रहे हैं और लाइट भी जल रही है।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

और इस स्कूल पर व्हाइट कलर का और नीले कलर का पेंट हो रहा है और कुछ खिड़कियां भी दिख रही हैं।

और सी_सी_टी_वी कैमरे भी दिख रहे हैं और कुछ लाइट दिख रही है।

और दो लेडीज दिखाई दे रही है और एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

और एक लाइट भी जल रही है और एक तार जा रहा है और लड़की अपने हाथ में रंग ले रही है।

यह एक कपड़ों का शोरूम है जो कि बहुत अच्छा है।

और इसके बाहर मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

यह एक बच्चों का पार्क है।

और रेल के डिब्बे भी हैं और रेल के पीछे घर भी दिखाई दे रहे हैं।